उसकी दूसरे साइड पे हम काफी सारे लोगों को देख सकते हैं इसमें हमे ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही हैं जो की एक कतार में लाइन से एक के पीछे एक खड़े हुई हैं वह अपनी बारी का इंतजार --

इस तस्वीर में हम काफी सारी पुस्तकों को देख सकते है जो-ज जिसपे की दुकान पर हमें दो व्यक्ति नजर आ रहे है जिन --

वह काफी सारे व्यक्तियों को भी देख सकते हैं जो कि कुछ मशीनों पे कसरत कर रहे हैं इसमें से सामने की तरफ हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जो की नीले रंग की टी-शर्ट पहन --

यह तस्वीर एक सलून की है जहाँ पर लोगो के बाल काटे जाते हैं व दाढ़ी बनाई जाती है।

इस तस्वीर में हमें एक नीले कलर की शर्ट पहन कर एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कुर्सी पे बेठे हुए व्यक्ति की दाढ़ी बना रहा है उसकी सीलिंग पर हमें कई सारे बैलून भी दिखाई दे रहे --

यह तस्वीर एक बाल काटने वाले सैलून की है जहाँ पर हमें एक व्यक्ति की कटिंग होते हुए दिखाई दे रही है।

उसके पीछे एक द्वार है जिसका रंग काला हे व द्वार पूरे गुब्बारों से सजा हुआ है गुबारों का रंग सफेद लाल नीला व हरा है।